सामने कुछ अल्ल अलमारिया है वाईट --

यहाँ पर एक बिल्डिंग है जो ब्राउन कलर कि है।

सामने की तरफ और कुछ यहाँ पर दूसरा सामान भी बहुत सारा रखा हुआ है सामने से रोड है आसपास और भी दु --

ग्राउंड खाली है और जो ब्राउन और व्हाइट कलर के टेबल रखे हुए हैं सामने के अंदर की तरफ कुछ लोग खड़े हुए सामान देने के लिए।

बहोत सारे बॉक्स में दूसरा सामान भी रखा हुआ है।

पिन रखी है रेड कलर कि अंदर अलमारियो में सामान रखा है।

एल_सी_डी टी_वी रखी है और फ्रिज रखे है वाशिंग मशीन रखी हुई है।

और छोटे भी बहोत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम यहां अवेलेबल है ऊपर छत में पूरी व्हाइट लाइट लगी हुई है आगे कुछ नीले कलर के सामने ऊपर पोस्टर भी--

और जस्ट सामने बोहोत से बड़े पेड़ लगे साइड में एक और बिल्डिंग है जो ब्राउन कलर की है ।

और बहोत सारी मशीने काफी पुरानी है इनमे जंग आ गय है।

और साईट में एक और वाईट कार खड़ी है आगे कि तरफ--

ये यहा पर एक रूम बना हुआ है जो बिना प्लास्टर का है ब्लैक कलर का --

यहा पर एक गार्डन है गार्डन में बीच मेसे रास्ता है दोनों तरफ घास लगी है कुछ पौधे लगे है।

कहि कहि पर छोटे पेड़ पोधे लगे हुए है सीढियां--

एक व्यक्ति आगे कि तरफ जा रहे है जिन्होंने येल्लो शर्ट ब्लु जींस --

दोनों तरफ कुछ बड़े पेड़ भी लगे हुए है आगे की तरफ बहोत ही सुंदर गे--

और सामने जो इसका गेट है वो वाईट कलर का है।

चबूतरा बना है ब्लू कलर का आस पास बहोत से बड़े पेड़ लगे हुए है।

हरे और सफ़ेद कलर के पत्थर रखी हुई दिवार बनी है डिजाइनिंग छोटे छोटे गेट है ।

खड़े हैं एक ऑटो रिक्शा खड़ी है इसको दो लोग ठीक कर रहे हैं।

रेड कलर के नम्बर्स लिखे है कुछ वाईट मशीने लगी--

लगे हुए है बहोत सारे टेबल भी लगे--

और इन बिल्डिंगों के आगे की तरफ छोटी घास है और कुछ पौधे लगे हुए।

और कुछ सब्जिया भी रखी हुई है जो कुछ ब्राउन कलर की थेलियो में--

ठीक है आगे कि तरफ सामने एक ब्लैक कलर का बड़ा--

पोस्टर लगा है सामने कुछ कारे है वहा पर भी वाइट पोस्टर लगा--

और बहोत सारे नारयल शावर और वाशरूम और किचन का बहुत --

सामान रखा हुआ है और यहां पर शो अह किचन में युज होती है वो भी लगी हुई है ऊपर की तरफ बहुत सी--

फ्रंट में कुछ ब्राउन कलर की स्क्रीन है जहां पर येलो लाइट --

यहां पर एक साड़ी है जो गोल्डन और ब्लू कलर की है इसके ऊपर--

और जो शॉप है उसमें बहुत सारी साड़ियां टेबल पर भी रखी है अलमारीयों--

और ग्रीन कलर के बहोत सारे पोस्टर सामने लगे है इसका फ्रंट पूरा--